हरे पेड़ लगे हुए है बाउंड्री बनी हुई है मकान के बाहर एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

ऊपर एक पोस्टर लगा है जिसपे जिला सेवा योजन कार्यालय लखीमपुर खिली लिखा हुआ--

ऊपर एक लाइट जल रही है पीछे अलमारी पे बाल्टियां रखी हुई है।

पीछे गेट लगा हुआ है एक लोहे की रखी हुई है।

हॉल है हॉल में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां योगा कर रहे हैं।

पीछे टीन सेट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आदमी खड़े हुए हैं।

मंच के ऊपर पंडाल लगा हुआ है जीसपे पीले रंग की लाइट जल रही है।

पीछे एक पंडाल लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं जो हरे पीले और नीले रंग के गुब्बारे हैं।